एक सर्विस सेंटेर की है यह सर्विस सेंटेर बॉश सर्विस का है।

सामने एक सफेद रंग की कार लगी हुई --

यह दृश्य हाजीपुर जंक्शन का है। इस जंक्शन में बाहर --

लगा हुआ है सामने दो तीन पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं यह व्यक्ति बालकनी में खड़ा अपनी सेल्फी ले रहा--

इस पूजा में लोग आधे पानी में दुबे खड़े भगवान की आराधना कर रहे हैं।